और इसके बगल में बहुत बड़ा सा पहाड़ भी है।

इसकी बहुत अच्छी से सजावट की गई है।

और यहां पर ए_सी की सुविधा भी है यहां देखने को मिल रहे हैं।

और उससे थोड़ा आगे नीचे बैठे बच्चे योगासन में बैठे हैं।

और यहां बाहर देखने के लिए खिड़कियां भी उपस्थित हैं।

यहां पर अनेक अनेक रंगों के पर्दे भी हैं।

यह एक सहारनपुर विकास का प्राधिकरण दरबार है।

जहां पर हमें कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं और यहां लाइट की रोशनी का प्रकाश भी हो रहा है।

और यहां कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं और पर एक डस्टबिन भी रखी हुई हैं।

और यहां पर एक बोर्ड की सुविधा भी है जिस पर लिखा हुआ है।

यह एक बहुत खूबसूरत सा टेबल है।

यह एक बहुत अच्छा सुंदर सा प्रभु यीशु मसीह का चर्च है।

यह एक बहुत अच्छी जगह है यहां पर अनेक प्रकार के कप रखे हुए हैं।

जहां पर कुछ बंदे जिम कर रहे हैं और यहां देखने का नजरा बहुत खूबसूरत है।

यह एक बहुत खूबसूरत सा नजरा है।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

और यह नीले रंग के आकाश में बहुत अच्छे लग रहे हैं।

जहां पर बैठने के लिए कुर्सी भी है।

और एक ने पिंक कलर की पहन रखी है।

उसके अंदर एक व्यक्ति भी बैठा है।

और यहां पर जग एक टेबल पर जग और डीशू पेपर भी रखे हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर नर्सरी है।

यहां पर बहुत सारी मछलियां देखने को मिल रही हैं।

जिसके प्रकाश से यहां पर देखने का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा है।

और यहां एक सोफे की व्यवस्था की गई है।

जहां पर अनेक प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं और उसके बाहर गाड़ी खड़ी है एक बाइक खड़ी है।

ये बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है।

और एक बेड भी रखा है और ऊपर छत पर पंखा भी लगा हुआ है।

जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा है हरी ओम ज्वेलर्स एंड जनरल स्टोर ।

और इस पार्क में छोटी छोटी हरी हरी घास हैं।

और घर के बाहर एक महिला उसको देख रही है।

और यहां पर पर्दे भी लगे हुए हैं और कुछ म्यूजिक क्लास भी है।